बुक्स भी दिखाई दे रही है यहां अंदर गुब्बारे भी लगाए हुए हैं और यहां एक आदमी भी बैठा हुआ है।

भी दिखाई दे रहा है यहां पर--

यहां पर दो बहोत बड़े बड़े पेड़ भी है।

यहां पर एक काली मारुति एट हंड्रेड धुलने के लिए आई है।

ही पटड़ी दिखाई दे रही है। इसके साइड में बहोत सारी बिल्डिंग्स भी है। एक बिल्डिंग का--

इस फोटो में बहोत सारे फोन दिखाई दे रहे हैं।

इसमे दो आदमी एक्सरसाइज कर रहे है। नीचे टाइले भी लगी हुई है। ऊपर लाइटे जल रही है।